प्लेग्राउंड नजर आ रहा है मुझे इस फोटो में बहोत से लोग नजर--

मुझे इस फोटो में मंदिर नजर आ रही है मुझे इस फो --

मुझे इस फोटो में मोबाइल नजर--

मुझे इस फोटो में फर्श नजर आ रही--

टेबल नजर आ रहे हैं मुझे इस फोटो में--

इस फोटो में झंडा नजर आ रहा है।

धूप नजर आ रही है मुझे इस फोटो में पौधे नजर आ रहे हैं।

टो मे कार नजर आ रही है? मुझे इस फोटो में भगवान नजर आ रहे हैं।

ये ये बैलून नजर आ रहा--

मुझे इस फोटो में स्कूल नजर आ रहा है बच्चे--

मुझे इस फोटो में बादल नजर आ रहा है।

ये इस फोटो मे मीटर नजर आ--

मुझे इस फोटो में लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे इस फोटो में--

मुझे इस फोटो में हरियाली नजर आ रही --

टो मे मे दीवार नजर आ रही है मुझे इस फोटो मे गेट नजर आ रही--

मुझे इस फोटो में दो कपल्स नजर आ रहे हैं मुझे इस फो--

मुझे इस फोटो में कैमरा नजर आ रहा--

मुझे इस फोटो में रेस्टोरेंट नजर आ रहा हैं मुझे इस फोटो में डेकोरेशन नजर आ--

जैसे इस फोटो मे रोड नज़र आ रही है। मुझे इस फोटो --